दिखाई दे रहे हैदो लड़के है एक ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है और एक ने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी है और दोनों स्माइल कर रहे है शायद बहुत ही खुश है।

यहाँ गॉगल्स और पर्स रख दिया है सामने में कैंची भी रखा है और उसके बगल में स्प्रे बॉटल दिखाई दे रहा है और यह एक मिरर फोटो है।

यह एक रोड की तस्वीर है जिसमे दो कार जा रही है जिसमे से एक कार येलो कलर की है और एक कार वाइट कलर की है और--

यह एक ग्राउंड का फोटो है जिसमे शायद फाइटिंग होती है।